कुछ गमले भी लगे हुए हैं बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं एक अह जो कार खड़ी है वह बहुत ही --

एक मैट भी बिछा हुआ है सा बाहर साइड एक अ टेबल पर--

यह एक बड़ा सा हॉल है जिसमें योगा क्लासेस चल रही है यहां पर बहुत सारी लेडिज है हॉल में--

यहां पर बिजली के तारें वगैरा सब कुछ लगा हुआ है।

चादर बिछी हुई है उधर एक पंखा भी लगा हुआ है उधर एक खिड़की भी लगी हुई है यहां पर गेट भी लगा हुआ है।

ये गो कार भी है छोटे बच्चों की बड़ी छोटी सब कारे है।

बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी लगी हुई है यह यहां पर--

कोनो इधर कांच का सीसा भी लगा हुआ है। बाहर एक आदमी जो खड़ा हुआ कैप लगाकर खड़ा हुआ है और ब्लू और औरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई है।

यह एक बड़ा सा डब्बा है जहां पर एक --

एक बड़ा सा ग्राउंड है उसमें कुछ गमले में रखें--